एक आदमी खड़ा है जिसने रेड कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है।

राइट हैंड की तरफ भी व्हाइट में कुछ बना हुआ है रोड है।

बड़ा सा गेट है दोनों तरफ दरवाजे हैं।

एक पार्क सा बना हुआ जिसकी बाउंड्री लोहे की से की हुई है साइडों में गमले पड़े हुए हैं।

टेबल है जिसके ऊपर एक प्लेट है कांच की प्लास्टिक का ढक्कन है एक डिब्बा है।

लेफ्ट की तरफ एक फोन लगा हुआ है दीवार पर टेबल पर एक गुलदस्ता पड़ा है।

पी_ टी_ सी_ न्यूज़ करके एक पोस्ट लगा हुआ है।

पर ग्रीन और ब्लू कलर की तिरपाल बिछी हुई है।

लेफ्ट की तरफ बहुत सारे लंबे-लंबे पेड़ हैं पीछे।

छोटे बड़े पेड़ हैं बिल्डिंग है बड़ी बड़ी आगे छोटे छोटे बिल्डिंग है पेड़ है।

टेबल है जिसके ऊपर वह पड़ा हुआ है।

टी शर्ट पहनी हुई है और रेड कलर की नेकर पहनी हुई है।

एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने व्हाइट रंग का कुर्ता पहना हुआ है।

सामने एक ए_सी लगा हुआ है डोण हैं सामने--

चार आदमी हैं दो लेडीज हैं दो पुलिस वाले खड़े हैं।

जिसमें चारों तरफ फैंसी --

आसमान है फ्रोजी कलर का और वाइट कलर में बहुत सुंदर।

दृश्य है नदी है बहोत बड़ी--

एक लड़का खड़ा हुआ है जिसनें टोपी पहनी हुई है उसके हाथों में कुछ है डंडा--

दो स्कूटी हैं लेफ्ट की तरफ एक स्कूटी और बाइक खड़ी हुई है।

बीच में कार्पेट बिछा हुआ है रेड कलर का।

छोटी बड़ी सब तरह की साइकिलें पड़ी हैं ऊपर ग्रीन कलर का एक बहुत बड़ा बोट लगा है जिसमें कुछ लिखा हुआ है।

उसके ऊपर टाइगर्स टायर लिखा हुआ है टाइगर की फोटो है।

एक लड़का साइकिल पर बैठा है जिसने रेड कलर की टीशर्ट पहनी हुई है।

हाउस है जिसके पाँच छः पिलर हैं।

बेंच है बहुत सारे जिसमें कुछ लेडीज और गर्ल्स बैठी हुई है।

रेस्टोरेंट में जिसके अंदर चेयर टेबल लगे हुए हैं एक सोफा हैं।

फोटो खींच रहे हैं कैमरे हैं लेफ्ट की तरफ एक पंडित बैठा हुआ है कुछ लोग खड़े हुए हैं।

एक आदमी है जिससे वाइट शर्ट पहनी हुई है ब्लैक कलर की पेंट है उसकी।

दो लेडीज हैं एक ने पर्पल कलर की ड्रेस और एक यलो कलर की साड़ी पहनी हुई है थाल है जिसमें सब्जी है।

लेफ्ट की तरफ भी एक लेडीज बैठी है उसके पास बहुत सारी सब्ज़ियां पड़ी हुई हैं।

लेफ्ट की तरफ एक पोस्टर लगा हुआ है उसमें कुछ लिखा हुआ है।

एक आदमी और है जिसने जैकेट पहनी है और कैप है।

राइट हैंड की तरफ एक गाड़ी खड़ी हुई है नीचे बाइक और स्कूटर है।

दो लड़के हैं एक ने व्हाइट शर्ट पहनी है एक ने पिंक शर्ट पहनी हुई है।

सामने ग्रीन कलर का हाउस बना हुआ है।

उपर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें एक लेडी की फोटो लगी है।

राइट हैंड की तरफ कुछ बनाया हुआ है लोहे से।

और ग्रीन कलर का पेन है एक ने येलो --

एक झड़ना है जिसमें से बहुत पानी बह रहा है नीचे नदी है बहुत बड़ी।

आदमी है कुछ लेडीज बैठे हुए हैं सामने एक टी_ वी_ है।

इसमें बेड दिखाए गए हैं फैंसी बेड ।

उसके पीछे का ब्लैक कलर का है।

साइकिले है टायर है दो बॉक्स है एक ब्राउन एक वाइट कलर का।

राइट एंड की तरफ बस है जिसका डोर खुला है।